उसे पे जो है बहोत सारा लोग बैठा हुआ है और साइड में कुछ लड़की लोग खड़ी है।

सायद मुंह पे टिरीटमेन कर रहा है और एक --

और नीचे जो है गमला में फूल है और नीचे जो है बहोत सारे समान रखा हुआ है।

और उसके ऊपर बहुत सारा जो है फोटो लगा हुआ है किराने का स्टोर है।